और यहां पे बहुत सारे पीपल्स हैं जो बैंक के लिए जा रहे हैं और--

और परली साइड एक पंखा भी है और परली साइड को भी --

और यहां पे बहुत सारी कार दिखाई दे और यहां पे एक आदमी भी है।